कोई सर का जो बच्चा लोग सर से बात कर रहे हैं एक वाइट कलर का शर्ट पेहना है एक पीला कलर का टी-शर्ट एक --

हाथ में लड़का का घडी है माथे में टो--

जिसमें चार लेड जेंट्स है दो लेडीज है एक वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए है इधर माइक लगा हुआ है।

बहुत बढ़िया सजावट किया हुआ है हॉल को बहुत सूंदर लग रहा है।